इसके साथ ही मुझे एक रेड कलर की बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

यहां पर मुझे पिंक कलर के और रंग बिरंगे फूल भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग भी गार्डन में घूमते हुए दिख रहे हैं।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

बिल्डिंग के सामने एक सड़क नजर आ रही है जहां पे कुछ गाडियां भी खड़ी हुई हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक--

के साथ मुझे हरी भरी क्यारियाँ और पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है और कुछ बोर्ड भी मुझे यहाँ पे दिखाई --

पे मुझे रनिंग करने वाली मशीन और--

ने ब्लू कलर की जींस पेहनी है और वाइट कलर की शर्ट पेहनी है उसने हाथ में एक ब्लैक कलर की बुक ले रखी है पीछे मुझे बहोत सारी बुक्स भी नजर आ रही--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

यहां पे एक रास्ता भी नजर आ रहा है पारक के साथ मुझे बहोत सारी बिल्डिंग नजर आ--